सामने एक बड़ा मैदान है मैदान में एवं एक बस देखने को मिल रहा है बस उजला कलर का है।

जिसके बगल में से कुछ तार का पेर है और सामने बहुत बरा बरा बिल्डिंग देखने को मिल लहा है।

सामने एक बरा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जो उजला कलर से पेंट किया गया है।

उसके बगल में एक मंदिर है जो की लाल कलर से पेंट किया गया है।

यहां पर एक मैदान भी है जिसमें छोटे छोटे घास नजर आ रहे हैं।

री काला कलर का है और एक साइकिल भी है यहाँ बहुत सारे --

उम्म लोग देखने को मिल रहे है ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है।

यहाँ जो गेट है उसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है और कुछ वायर भी यहाँ पे --

सामने एक बड़ा सा वाटर पार्क देखने को मिल रहा है जहां पे बहोत पानी है।

और यहाँ पे छोटे-छोटे हरे-हरे घास भी देखने को मिल रहा है और ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है।

और यहाँ तीन विकेट भी देखने को मिल रही है और उसके ऊपर दो गुल्ली --

सामने एक बड़ा जंगल देखने को मिल रहा है यहाँ पर कई सारे मेमना और बकरी खस्सी देखने को मिल रहा --

जो अलग-अलग रंग के है और कुछ बकरियाँ चारा खा रही है।

सामने एक बरा दुकान देखने को मिल रहा है जो जिला क्लास पे अटेंड किया गया है।

और एक सीमेंट से बना हुआ कुछ बैठने वाला जैसा है।

और कुछ गमले देखने को मिल रहे जिसमें छोटे छोटे पौधे नजर देखने को मिल रहे--

सामने एक बरा रूम देखने को मिल रहा है जहाँ नीचे में टाइल्स लगी हुई है और कुछ बैलून परे हुए हैं।

सामने दो बिल्डिंग देखने को मिल रही है जहाँ एक लाइट भी है।

जो उजला कलर का है ऊपर आसमान है आसमान नीला कलर का है।

इसमें दो बाइक लगी हुई है बाइक के ब्लैक कलर के है।

और नीचे में छोटे छोटे घास भी नजर आ रहे हैं और पीछे में एक--

टिभी का ले रखी है और बाहर में एक आदमी खरा हुआ है जो सर्ट दिख दिखा रहा है।

और बगल में एक कढ़ाई भी देखने को मिल रही है जो काले रंग की है।

और दुकान के बाहर कुछ बैलून जैसा गोल टंगा हुआ नजर आ रही है।

और बहुत सारे पैर भी है यहाँ एक आदमी मौजूद है ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है।

सामने एक बड़ा बिल्डिंग देखने को मिल रहा है जिसमें एक खिरकी नजर आ रही है।

सामने में कुछ घास देखने को मिल रहे हैं और कुछ पौधे हैं।

और एक सीरही भी देखने को मिल रही है ऊपर आसमान है आसमान नीले कलर का है।

उसके चारो बगल उजला और पीला कलर के अह कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे हैं।

इसके आगे एक छोटा सा दुकान है और बगल में कई सारे --

यहाँ कुछ लाइटें भी देखने को मौजूद है जो उजला कलर के देखने को मिल रही है।